यो एक रूम है यहां पे दो अं च चार कुर्सी रखी हुई है।

यहाँ पेड़े भी लगे हुए है पेड़ भीं बहोत सुंदर दिख रहा आप देख सकते हो बहोत सुंदर पेड़ हैं।

यहां ये वो कार वाशिंग वॉश है वाशिंग है ये यहां कार को धोया गया है।

रोटी रखी हुई है इसपे--

यहां पे एक जाली लगी हुई हैं यहां पीछे--

और यहां पे देख सकते हो आप कचरे की दुकान डब्बा भी रखा हुआ है। बहोत अच्छे--

चारों तरफ कुर्सी कुर्सी लगी हुई है मेज लगी हुई है।

यहां पे वो रखा हुआ है यहां पे भी

यहां पे द लक्ष्मी साड़ी सेंदन लिखा हुआ है यहां पे जोगीराम ग्रहकेट झूलाने वाला लिखा है यहां पे --

हनुमान जैसी ये कोई दुश्मन है जैसी बिल्डिंग बना रखी हो।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

खेलने का भी हरा भरा घास के मैदान लगा रखा है यहां पे स्टेडियम है ये।

आप देख सकते हैं बहोत सुंदर मंदिर है खाटू श्याम जी का।

और यहां पे एक कृष्णा हुआ नय लिखा हुआ है।

और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहां पे यहां पे शीशे से लगे हुए है फर्श बहुत अच्छा दिख रहा है।

पिज़्ज़ा लिखा हुआ है याहं पे हैं गाड़िया यहां पे बाइक खड़ी हुई हैं।

बलियान और अंडरवियर ही मिलाता है ओन्ली जें--

पीछे यहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहां एक आदमी एक औरत नाव में बैठे हुए हैं।